जियो फोन भी यहाँ उपलब्ध है और देखने में बहुत मस्त --

और नीचे एक ठो कैमरा लगा हुआ है कुर्सी भी लगा हुआ है एक ठो।